यह एक कार जाती हुई दिखाई दे रही है एक आदमी--

साइड मे गमले छोटे छोटे--

झंडे के पास में एक--

के सामने बहुत सारे लोग--

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

उधर से आते हुए दिखाई दे रहा--

साइड में एक रेड कलर की बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है और आगे भी एक ब बस खड़ी हुई दिखाई दे रही--

निकालती हुई दिख रही है और एक आदमी खड़ा हुआ--

पेड़ की छाव भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक सामने बोर्ड --

तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ और पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे--

अच्छे लोग आए हुए हैं एक तबला बजा रहा है एक बैंजो बजाते हुए दिखाई दे रहा है एक आदमी कुछ करते हुए दिखाएं एक वाइट कलर का--

यहां टेबल रखी हुई हैं।

साइड में एक ऐ_सी और पंखा भी दिखाई दे रहा है और तीन कैमरा दिखाई दे रहे हैं तीन चेयर दिखाई दे रहे हैं।

आई भी हैं एक औरत।

बहोत सारी चीजे रखे हुए--

में कुछ बनती हुई दिखाई दे रहा है यहां पे।

कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे एक चलते हुए एक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा आस पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे--

और साइड में एक बोर्ड --

यहां पे बहुत सारे बुक --

की भी दिखाई दे रही है।

बात करते हुए दिखाई दे रहे--

यह एक पेट्रोल पंप है।

एक व्हाइट कलर की कार खड़ी है और एक रेड कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक जिम सेंटर है।

दिखाई दे रहा है और एक आदमी फोन पे बात करते हुए दिखाई दे रहा।

लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बैग भी दिखाई दे रहे हैं।

एक दरवाजा दिखाए दे रहे एक--

पॉट दिखाई दे रही है।

चार पांच लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार ब्राउन कलर से--

ये दिखाई दे रहे हैं सामने।

एक आदमी बैठा हुआ है।

बोर्ड के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और दीवाल के ऊपर व्हाइट कलर का--

यहां पे एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

ये अलमारी के अंदर है।

के हुए दिखाई दे रहे हैं।

लगी हुई दिखाई दे रही--

बिल्डिंग के सामने बहुत सारे--

दिखाई दे रहा है एक--

इस मंच के ऊपर एक--

यहां पे बहोत सारे लोग--

ब्लू कलर एक पिंक कलर एक--

पीला कलर के मैट है।

यहाँ पे एक टोकरी है।

और एक बड़ी सी गेट --

भी दिखाई दे रही है इस दीवार के पीछे।

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गणेश भगवान की मंदिर है।

मूर्ति के ऊपर बहुत सारे--

पुस्तक रखी हुई दिखाई दे रही है।

लगी हुई है दिखाई दे यहां पे बहोत सारे बच्चे आए हुए --

और कुछ बच्चे ऊपर स्टेज के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक मैडम खड़ी हुई दिखाई दे जो वाइट कलर के फ्रॉक पहनी हुई है।

एक ब्लू कलर का घर है।

उसके ऊपर दो येलो कलर की टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है।

उसके आस पास बहुत सारे लोग फोटो खींचाते हुए दिखाई दे रहे--

और बहुत सारे बिस्किट भी रखे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पे बहोत सारे खरबूजे रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

तीन दरवाजा दिखाई दे रहे हैं।